काफी सुन्दर लग रहा है यहाँ पर यह एक स्टेज नज़र आ रहा है ये स्टेज काफी सुन्दर लग रहा है यहाँ पे स्टेज --

कुछ मिट्टी देख रहे है जो धरे वगैरह का उपयोग करता यहां जो काफी लग रहा है यहां पर गिट्टी सीमेंट वालों की तरह नहीं--

इसे काफी सुंदर ढ़ंग से सजाया गया है यहाँ गेट पर लाइटें वगैरा लगाई गई है जो काफी सुंदर लग रही है यहाँ बहुत सारी लाइटें वगैरा लगाई है यहाँ कुछ लोग भी दिख रहे है।

अअ मोटरसाइकिले लगी हुई है जहां पर सामने दुकानदार के जो सामने यहाँ कुछ लोग --